यहां बहुत सारा पहाड़े दिखाई दे रहा है।

बाहर में लोहे की जंजीर लगाया हुआ है।

यहां पे पेड़ पौधे भी हरा भरा दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी भी है।

इस दुकान में बहोत सारा लाइटें लगाई गई है।

नीचे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक ऑटो का शोरूम है।

और ऑटो में फूल की माला भी लगाया हुआ है।

यह एक दुकान है।

यहां एक ए_सी भी लगा हुआ है।

दीवार पे कुछ बाइके का चित्र बनाया गया है।

यह एक रोड है ।

इसमें टायर लगा हुआ है।

यहां एक मकान भी--

यह एक कार्यालय है।

इस फैक्ट्री में बहोत सारा तारे दिखाई दे रही है।

और नीचे फर्श पे टास लगा हुआ है।